मार्बल्स का फर्श है ए टी एम में से ब्लू कलर की स्क्रीन आ रही है जिस पर कुछ लिखा हुआ है।

रेस्टॉरंट में चार खिड़कियां हैएक दरवाजा है जिसे टेंट से उम्म डेकोरेशन फूलो से डेकोरेशन हो रहा है और --

स्काई ब्लू कलर की टोपी है और बिच में भी ग्रीन कलर का पहाड़ नजर आ रहा है और बिच में छोटे - छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है।

बाउंड्री बनी हुई हैं रेड कलर की बॉउन्ड्री रेड --

बीच में तार आ रहा है और पीछे साइड में दरवाजा है जिसमे पर्दे लटके हुए है जिसमे ब्लैक कलर का रोशनी आ रही है बाहर से--

जमीन पर पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रही है बाउंड्री बनी हुई है पत्ती सुखे--

देख पा रही हूँ एक मंदिर है जिसमें बुद्धा की बहु मूर्ति --

पेड़ - पेड़ घास पेड़ दिखाई दे रहा है और वाइट कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।

अ पीछे वाइट कलर अ वाइट कलर आ--

और इसमें द्वार जिसमें ब्लू वेन --

और एक साइड में रस्ते के साइड में ग्रिल --

दूसरे साइड में ईटों की ईटों की ग्रिल जा रही है।

यल्लो कलर का पेंट है और आसमान दिखाई दे रहा है रोड --

कुछ एक दरवाज बंद है बाकि दरवाजे खुले हुए है।

एक आदमी बैठा हुआ है दे एक आदमी लेक्चर दे रहा--.

वीर शिवाजी की मूर्ति है जो घोड़े पर है और उसके हाथ में तलवार लिए हुए है उसमे शिवजी --

एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर शिवाजी कॉलोनी लिखा हुआ है पीछे दो वाइट टेन्ट लगे हुआ है दो खंभे है जिन पे तार जा रहै है।

पानी बेह रहा है पानी के ऊपर ब्रिज बनी हुए है उसमें कुछ पीछे --

घोड़े के लिए घास रखी हुई है उसकी सर से पैर निचे से वाइट है।

में जेंट्स शॉप दिखाई दे रही है जो खुली हुई है जिस पर --

रेड कलर का साइड में एक टोकरी रखी है एक आदमी जिसका इसके आदत से नजर आ रहा है।

बलबे दिखाई दे रही है एस. एस. सी. लिख रहा है।

इसमें एक लेडीज है जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है पीछे --

दो गिटार है एक हारमोनिया एक ढोलक है।

साइड की दो कुर्सियां और एक बड़ी कुर्सियां दिखाई दे रही है।

पीछे भी कुछ समान रखा हुआ है सोफा बेड दिखाई दे रहा है और मार्बल मार्बल लगा हुआ है और --